एक खुला गार्डन है जहा आइड साइड पेड़ लगे हुए है और नीचे हरी-हरी घास है।

राइट साइड में कुछ बना हुआ है दो सख्स खड़े हैं एक सख्स चल रहा है और एक सख्स खड़ा है ऊपर बाहर झंडे वगैरह लगे हुए हें हैं कुछ पेड़-पौधे भी हैं।

आइट -सा-साइड में कुछ पेड़ वगेरा है ब्रिज के ऊपर भी कुछ है कुछ ए बाउंड्री भी बनी हुई है लोहे की--

और एक व्हाइट कलर ब्लू कलर का थैला है। पन्नी रखी हुई हैं येलो कलर की।

एक रोड है रोड के ऊपर गाड़ियां चल रही हैं। कुछ टावर वगेरा लगे हुए है पेड़-पौधे लगे हैं। बिल्डिंग भी है बनी हुई कार वगैरह चल रही है।